इसमें चार फेमिली जो है हमको दिखाई दे रही है एक फेमिली है जो उसमे चार लोग जो है दिखाई दे रहे है यहाँ पे दो सीढ़ियां भी हे।

बिल्डिंग है जिसके उपर टंकी रखा हुआ है। यहां पीछे से हमें कुछ --

यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें एसबीआई --

वो हमें दिखाई दे रहा --

यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक बहोत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है।

साथ ही यहाँ पे जो है इसकी हल्की सी दीवार पे जो एक कोई पोस्टर जो है --

यहाँ पे एक बच्चा जो है इसके आगे एक सड़क भी है। यहाँ पे एक बच्चा जो है खड़ा हुआ है। कोई बैग लेके खड़ा हुआ है।

खटिया पे एक आदमी बैठा हुआ है जो नीचे की ओर हाथ किए हुए हैं।

ताकि इसके अंदर जो आगे दिखाई दे रही है एक आदमी --

अब हमें दिखाई दे रहा है इस इमेज में कि नीचे जो है फर्श है जहाँ पे जो है --

कुछ फोटोज जो हैं वो लगी हुई हैं।